और कपड़े अलग अलग रंग के रखे हुए हैं।

और बिल्डिंग को ब्लू कलर से लगाया हुआ है।

इस पिक्चर में बहुत सारे बच्चे दिखाई दे रहे हैं।

और आगे में ग्लास का टेबल भी रखा हुआ है।

और बैठने के लिए सीट बनाया हुआ है।

बेड के ऊपर दो सफेद रंग के गारू रखे हुए हैं।

और पिक्चर में दो लोग दिखाई दे रहे हैं।

और सीलिंग में एक सी_सी कैमरा रखा हुआ है।

इस पिक्चर में घर के अंदर दिखाई दे रहे हैं।

इस पिक्चर में काले कलर की ट्रे दिखाई दे रही है।

और सफ़ेद रंग के शुगर पैकेट भी रखे हुए है।

पीछे में बहुत सारे घास दिखाई दे रहे हैं।

टेबल को ऊपर में बहुत सारा रस्सी राउंड करके रखा हुआ है।

और आगे में ग्रीन कलर का एक गाड़ी गंदा सा दिखाई दे रहा है।

और दीवार में बहुत सारा फ्रेम चपकाए हुआ है।

और अंदर में दो लोग दिखाई दे रहे हैं।

में ब्लू कलर का प्लास्टिक लगाया हुआ है।